एक स्टेशन दिखाई दे रहा है और जो फोटो है वो ट्रेन के अंदर से लिया है।

ट्रेन का पटरी दिख रहा है और एक बिग बंगलो दिखाई दे रहा है।

उनके पैर में जो है आलता लगा हुआ है बहुत सारे ज्वेलरीज पेहने हुए हैं।

उन्होंने जो भरतनाट्यम का कॉस्ट्यूम है वो पहना हुआ है अलग अलग कलर में

ये एक पुराने जमाने का अह घर दिख रहा है जहां पे --

खंडहर जैसे दिख रहा है सिर्फ उसका गेट जो है वो ऑरेंज अ येलो कलर का दिख रहा है।

बनाया है घर जैसे और बहुत सारे लोग फोटोज ले रहे हैं।

अ ग्लास का बनाया हुआ है अंदर दो लोग दिखाई दे रहे है और--

और साइड मे एक फ्रिज है जिसके अंदर बहोत सारे कोल्ड ड्रिंक है और एक वायर दिखाई दे रहा है और एक--

और बहुत सारे गार्डन जैसे बनाया हुआ है गार्डन के कॉर्नर कॉर्नर पे लाइट्स का खंभे लगाया हुआ है।

और बाउंड्री दिखाई दे रही है जो बाउंड्री है वो ऑरेंज और लाइट ऑरेंज से कलर किया हुआ है।

जो बड़े-बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं और जो अंदर है एक बाइक पार्क किया हुआ है और बीच में एक रास्ता है।

और साइड में जो पर्दे लगाया है वो वो भी ऑरेंज दिख रहा है और जो स्टार्स है दो वो --

पर्पल कलर के बहोत सारे लोग जो है खड़े हैं और फ्लावर का डेकोरेशन किया जा रहा है।

एक अ बड़ा सा हॉल में और नीचे जो फ्लोर है वो एकदम क्लीन है।

ये एक रोड है जहां पे बीच में एक डिवाइडर है।

और सोफा लगाया हुआ है रेड कलर और सिल्वर कलर --

यहां पे बहोत सारे लोग बैठे हुए साइड में और ऊपर जो है डेकोरेशन किया हुआ है कुछ फूलों का --

एक अंकल जो है बाहर आ रहे हैं तो फिर उनके ऊ सर के ऊपर एक टोपी है व्हाइट कलर का।

एक मोटर दिखाई दे रहा है एक प्लगबॉक्स दिख रहा है और साइड में कुछ हनी बी का डेकोरेशन किया हुआ है और फोन का --

यहां पे माउंटेन के ऊपर का नजारा दिखाई दे रहा है।

और ऊपर बादल जो है वो एकदम व्हाइट कलर के दिख रहा है और यहां पर एकदम सामने रस--

उसके साथ ही पेड़ एक अटैच है जैसे र लग रहा है और बहोत सारे अ गोल--

और एक ए_सी का दिखाई दे रहा है और साइड में एक बिल्डिंग दिख रही है बड़ी सी ऑरेंज क--

और छोटे छोटे प्लांट दिखाई दे रहे है जो व्हाइट कलर के पॉट मे लगाया हुआ है और एक--

चेयर दिखाई दे रही है स्टूल जैसे और टेबल दिख रहा है और फायर एक्सटेंशन भी दिख रहा है।

और एक उम्म स्कूटी दिख रही है वाइट कलर की गेट है जो --

ये एक फोटो अ रोड साइड का है।

कोका कोला ड्रिंक्स वगैरा रखा हुआ है स्वीट्स भी डिस्प्ले किया हुआ है एक कांच के कंटेनर में।

फै फैन भी दिखाई दे रहा है और आइसक्रीम का बॉक्स भी दिख रहा है।

ये एक गार्डन है जहां पे रोज का गार्डेनिंग चल रहा है।

और गुजराती में लिखा है और एक दो कार बनाया हुआ है ब्लू और और रेड में।

और यहां पे एक कार है वाइट कलर का अंदर एक पानी का कैन है।

और एक पटरे का शेड के अंदर है ये लोग।

लिखा हुआ है गुजराती में अ और एक गेट बनाया हुआ है बड़ा सा और ये जो--

अं बनाया है वो ग्रे कलर का है और अंदर एक बंगलो है।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

और पानी का जो बहाव है वो व्हाइट कलर में--

यहां पे एक अंकल है जो बीच में खड़े हैं झाड़ो के।

और दूसरे जो है उनके पीछे हैं जिन्होंने पिंक कलर का ड्रेस पहना है और जो आगे है वह व्हाइट कलर का --

दिखाई दे रहा है एलो के पर्पल ऑरेंज लाइट पर्पल व्हाइट --

ये एक रोड साइड का व्यू है जहां पे सब कुछ सामान ले रहे हैं बहोत सारे लोग --

और यहां पे एक प्लास्टिक का डब्बे दिखाई दे रहा है ऊपर।